यह एक नीले कलर का गेट है जिसके बाहर एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और एक छोटा सा झरना भी बह रहा--

और कुछ व्यक्ति खड़े इनको देख रहे हैं और हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और सामने दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

और दीवारों पर पेंट से अच्छे अच्छे टैटू बने हुए हैं।

और लाइटें भी लगी हुई हैं सामने की और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह एक कंपनी है जिसके बाहर सुंदर सा गेट लगा हुआ है।

और पहाड़ों के ऊपर बादल हो रहा है।

गेट के अंदर दो कुर्सियां रखी हुई हैं और सामने की ओर शीशे की खिड़की भी है।

जिस पर कुछ व्यक्ति चल रहे हैं ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

और दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है।

जिसमें बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।